उक्क क्या कर रहेएएएएए टीन दिख रहेएएएए है घर दिख रहा है औरररर कुछ भी दिख रहे हैऔर कुछ डोरी भी दिख रहे है।

और कुछ चेयर भी रखी है और कम्पुटर भी रखा है और कुछ बोतलें भी रखी है कुछ गमला रखे है मोबाईल भी रखा है कुछ आदमी भी बैठे हैं ।